एक मूर्ति दिखाई दे रही है और सामने एक चबूतरा बना है जोकि सफ़ेद कलर का है। सामने एक व्यक्ति खड़ा हुए है।

आ अम एक सड़क दिखाई दे रही है जिसमे एक डस्टबिन बना हुआ है जोकि सीमेंट का है जिसमे बहोत ही ज्यादा गंदगी दिखाई दे रही है ।